जैसा की हम देख सकते है मल्टी दिख रही है मल्टी पूरी कांच कांच की दिख रही है इसमे तीन फ्लोर दिख रहे है ऊपर के फ्लोर पे दुकान दिख रही है नीचे की फ्लोर पे भी दुकान दिख रही है तीसरे फ्लोर पे दुकान दिख रही है ऊपर एक टावर दिख रहा है दो पानी की टंकी दिख रही है जोकि हरे कलर की है।

इस का अड्रेस वगेरा सब दिया हुआ है साइड मे साइकले खड़ी है जो बच्चों की लग रही है जो इस इंस्टिट्यूट मे पढ़ने आते है उनकी साइकल लग रही है साइड मे एक गली दिख रही है।

दिखता है जो के सफ़ेद कलर का दिख रहा घर है जो के सफ़ेद कलर का दिख रहा है पास मे जो भी काला काला दिख रहा है और जो घर है वो बिना प्लस्टर के दिख रहा है।

नीचे रास्ता जाते हुए दिख रहा है नीचे चैन गेट से इन का रास्ता दिख रहा है साइड में ऐ.टी.एम. भी दिख रहा--

जो उपर चढने के काम में आते है साइड में काउंटर बना हुआ है उसके पास में कांच का काउंटर बना हुआ है उसके पास में वाइट कुर्सी रखी हुई है पीछे लाल कलर की कुर्सिया रख रखी है लाइटस लगी है जो की वाइट कलर की--

जैसा हम देख सकते है की सामने ए.टी.एम बना हुआ है ए.टी.एम के पास बाइक खड़ी है ए.टी.एम के ऊपर दो ए-सी लगी हुई है ए.टी.एम के ऊपर बहार एक नाम लिखा है जो बैंक का नाम है साइड में एक शटर दिख रहा है जो कि बंद है दुकान का शटर उसके ऊपर भी दकन का नाम लिखा हुआ है।